उसमें लोग बैठ के देख भी रहे--

जो ऑइल शॉप की लग रही--

जो घाटियों के बीच नज़र आ रही है।

जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है।

जो एक भैय्या रोड पे चलता हुआ दिख रहा है।

यह एक पिक्चर्स है जो--